यह एक गार्डन है तालाब के किनारे और बहुत सारे पेड़ भी हैं।

और रेड कलर का कुछ शायद दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चश्मे का दुकान लग रहे है यहाँ बहुत सारे --

यह एक खाली रास्ता दिखाई दे रहे हैं और इसके आगे एक गार्डन दिखाई दे रहे हैं।

जैसे लग रहा है यहां जानवर भी है।

यह बहोत बड़ा बाजार दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ बहोत सारे सामाने दिख रही है और सब लेनदेन में लगे हुए हैं।

पूल भी लगा हुआ है येलो कलर का और बाइक भी चल रही है।

यह एक आइसक्रीम शॉप है।

लोग बैठे हुए दिखाई दे रही है और--

यह एक अंगूर है जो प्लेट में रखा हुआ है।

यहां किसी चीज का प्रोग्राम चल रहा है बहोत सारे लोग--

यह कुल्फी का दुकान है।

य यह किसी का घर है जहां न्यू ऑटो दिख रहे हैं दो लोग--

ये किसी का घर है जो की डेकोरेट हुआ है हुआ है यहां पे लाइट भी लगी है।

यह एक मंदिर दिखाई दे रही है और एक लड़का जो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है।

स्पेशल लस्सी है कुल्फी है अलग अलग प्रकार की गमले भी दिखाई दे रही है।

यह कोल्ड ड्रिंक का रेस्टोरेंट है जहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रही है।

यह कॉफी शॉप है जहां बहोत सारे--